ये तस्वीर एक मंदिर की है जिसमे स्वर्ण पेंट किया गया हैं और एक बड़ा-सा दर बना हुआ हैं दर के ऊपर रोशनी का इंतजाम किया गया हैं जो कि पत्थर का है।

और इसमे बहुत प्यारे और इसमे माला लाल रंग की डली हुई है जो दो माला है और पीछे की तरफ लाल रंग के कपड़े का----